फैन भी रखा हुआ है कई सारे बुक्स कंप्यूटर बोर्ड्स --

और वहां पर कुछ मंडा जैसा बना हुआ है जो--

एक बाइक है जहां पे एक लड़का बैठा हु--